के पास एक लड़का खड़ा हुआ है जो कि अपने काम में लगा हुआ है लड़कियां कुछ खड़ी हुई है जिसने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और एक --

पैर रखाहै कुछ मैडम खड़ी हैं पीछे उनकी कुर्सी खड़े रखाी हुई है कोई स्कूल की जगह है जहां पीछे जाली लगी हुई है बच्चों का सामान रखा हुआ है फिर भी क्यों मैं भी क्यों--